और कुछ बैठने की सीटें रखी हुई हैं और पास में मतलब बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

ये खेत है जहाँ पर एक आदमी अपना फोटो क्लिक कर रहा है।

एक बोर्ड लगी हुई है ए टू जेड लैपटॉप सोल्यूशन ।

एक दुकान है जहाँ पे गटर रखी हुई है चार दो बड़ी सी बेसिन रखी हुई है और नीचे के पास में चार --

तीन बेसिन रखी हुई हैंऔर ऊपर दीवाल के साइड पे चार-पांच मिरर लगी हुई हैंउसके बगल में--

खंबे रखी हुई है और पास में एक एचपी की--

और एस_बी_आई बैंक के ऊपर में दो डिश टी_वी लगी हुई है और एक पिलर सी खड़ी है।

यहां पे फैक्ट्री के गेट के पास एक आदमी खड़ा है।

और पास में एक फोर व्हीलर है और बगल में एक सीढ़ी गई हुई है।

और थोड़ी दूर में लाइट की पिलर भी खड़ी हैं।

पिक्चर बनी हुई है बादल की पिक्चर बनी हुई है और शाम यहां पे बोर्ड लगी है वहां पे कुछ फ्लावर की फोटो वगैरह तस्वीर बनी हुई है।

यह फूलों की खेत है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने फूल इकट्ठे कर रहे हैं कुछ जेंट्स है और कुछ लेडीज हैं और सनफ्लावर की खेत है।

ये लोहे की फैक्ट्री है जहाँ पे एक आदमी खड़ा है उस पिलर को काउंटिंग --

और पॉलिश कर रहा है पास में एक मशीन भी दिख रही हैऔर एक कार्टून दिख रही है।

ये जिम की क्लास है जहाँ पे एक लड़का खड़ा है और वह एक्सरसाइज कर रहा हैऔर एक लड़का बैठा है।

और दूर में दो मशीनें लगी हुई हैं जिम की।

और नीचे जमीन पे भी मतलब हरे भरे खेत है और पास में दो-तीन मकान बनी हुई हैं।

और एक दो पिलर सी खड़ी हुई हैं स्विमिंग पूल के पास और बाउंड्री के बाहर में बहुत सारे पेड़ पौधे।

पेड़ दिख रहे हैं जंगल से जैसे--

ये किसी चीज की ऑफिस है ऑफिस में।

ये किसी चीज की क्लास है जहाँ पे बहुत सारे बेंच लगी हुई है बैठने की सीटें हैं दो पंखे टंगे हैं एक बगल से गेट दिख रही है।

और दो घोड़े तो खाली हैं और कुछ घोड़े पे लोग बैठे हुए हैं।

मकान में पिलर के कामें हो रही हैं दो आदमी पिलर के पास खड़ी हुई हैं और बांस बल्ले लगी हुई हैं।

ये गार्डन है गार्डन में बहुत सारे फू पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

दूर दूर में सब लोग पंडाल में बैठे हुए हैं वरमाला की तस्वीर लगी--

ये कपड़े प्रेस की दुकान है जिसमें दुकान में एक आदमी बैठा है मोबाइल चला रहा है।

और एक मंदिर दिख रही है टेबल भी एक बड़ी सी दिख रही है और पीछे की टेबल में एक--

यहाँ पे बैठने की सीटें वाइट कलर की लगी हुई है दो तीन लगी हुई हैं एक टेबल लगी हुई है।

क्लीनिक के बाहर में एक लड़का खड़ा है उसके बगल में एक चेयर लगी हुई है और पास में एक मोटरसाइकिल भी--

और गुब्बारे से सजी हुई है क्लासें और पंखे लगी हुई है।

और लाइटें लगी हुई हैं दो-तीन मिरर भी लगी है।

ये मैदान है जहाँ पर चारों तरफ से सब लोग बैठे हुए हैं और कुछ देख रहे हैं साइकिल भी लगी है।

और सिलाई मशीन दिख रही है और पिकों की मशीनें दिख रही हैं और कूलर दिख रही हैं और सा बगल में एक टेबल --

एक कड़ाही दिख रही है कड़ाही के ऊपर बड़ी सी ट्रे में जलेबी रखी हुई है।

ये बहुत बड़ी सी एक ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पिक्चर ले रहे हैं।